यहा एक फूड कोर्ट बनाया गया है।

जैसा कि आप देख रहे है यह एक मॉल दर्शाया गया है एक छोटा सा इंडियन टेरियन माल है।

बच्चों के खेलने के लिए झूले लगाए हुए हैं बैठने के लिए बेंचेस व्यक्ति बेंच पर--

और और यह सड़क को दो भागों में विभाजित किया गया है।

चर्च की बनाई गई है जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं।

यहां पर एक छोटा सा मंदिर टाइप ।

को दर्शाती हैं जैसा कि तस्वीर में देख सकते है यहां पर पास्टर मेन एंड ट्रेस गेट के बाहर खड़े होकर--

बाल कटिंग के लिए तैयार करके बिठाया गया है।

और ए_टी_एम साइड शटर डाला हुआ है।

यह एक पेट्रोल पंप की तस्वीर दर्शायी गई हैं जैसे की तस्वीर में देख पा रहें हैं यहाँ पर अंधेरी रात दिखाई दे रहीं हैं।

व्यक्ति यहां पर पेट्रोल भरते नजर आ रहे हैं यहां पर कई सारी गाड़ियां पेट्रोल कुछ गाड़ियां पेट्रोल भरवा रही है।

इस शोरूम में अंदर से कांच के ग्लास --

मुख्यत यहां डम्मी को गर्ल्स की फ्रॉक पहनाई गई है उसकी--